गूगल पे की सुविधा --

यह एक स्कूल है यहाँ बहुत सारे स्कूले हैं यहाँ कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है यहाँ बहुत सारे साइकिले भी खड़ी हैं।

यह एक रेस की मैदानें है यहाँ बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं बहुत ही बड़ा फील्ड है।

यहाँ बोहोत सारे घरे दिखाई दे रहे है। बोहोत ही घर है। यहां बोहोत सारे घासें भी है। बोहोत सारे पेड़े भी दिखाई दे रहे है।

यहां बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं यहां बहोत बड़े-बड़े डब्बे हैं में सामाने भी है।

बहोत सुंदर सा कमरा है बेंच भी है।